और दो सॉप है जो कि बंद है और एक --

आपके सामने एक छोटा सा टेबल रखा है जिसमें भगौना और कुछ क्लास दिखाई दे रहे हैं चाय की छननी दिखाई दे रही है सामने बिल्डिंग आसमान दिखाई दे रहे हैं अच्छे से --

और इस पे दीवार जो है वो व्हाइट दिखाई दे रहे हैं कलर किए हुए हैं कहीं रेड दिखाई दे रहे हैं दो आदमी भी खड़े हैं जिनका पैर दिखाई दे रहा है हमे।

और बगल में छोटा सा दिखाई दे रही है पीछे घर दिखाई दे रहे हैं।

खंबे लाइट के दिखाई दे रहे उपर वायर दिखाई दे रहा है आसमान साफ़ दिखाई दे रहा है सब कुछ वाइट वाइट कलर के बादल भी है और कुछ पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे है।

और हाथ में भी उसके पर्स है और लाइट चल रही है एटीएम के अंदर --

और साउंड के सामने हमें दिखाई दे रहा है उपर आसमान है आसमान मै काफी बादल है और एक आदमी पैराशूट लेके उड़ रहा है दूर से बिलकुल चाँद --

छोटे कहीं कहीं पत्थर जैसे हमें साफ दिखाई दे रहे हैं --

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पार्किंग है और --

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जनरल स्टोर है जो रेड कलर सेकमेंट है उसका शटर भी फुला हुआ है --

पैर दिखाई दे रहे हैं नीचे हमें रोड दिखाई दे रहा है और मिट्टी भी हमें साथ दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक रोड है रोड पे दो बसे दिखाई दे रही है और एक साथ दिखाई दे रहा है कुछ आदमी है।

फूल का जड़ा दिखाई दे रहा है जो हमारा काली मिर्च है और ये --

सीढ़ी भी दिखाई दे रही है और बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं काफी दुकान खुला हुआ है एक आदमी स्टेशन पे जा रहा है।

सब चेयर भी लगा हुआ है टेबल भी लगा हुआ है टेबल पे दो-तीन बोतल पानी और कोल्डिंग ग्लास में रखा हुआ है और चेयर लगा है वाइट वाइट कलर का --

उपर एक हाईवे दिखाई दे रहा है रोड के किनारे मै ओ देखिये पट्टी भी खिची हुई है नाले के उपर ओ भी साफ़ दिखाई दे रहा है आसमान और --

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सॉप है और सॉप में काफी रैक है रैक में --

जो कि गैरेज है और एक आदमी बैठा है बेंच पे --

नीचे जमीन दिखाई दे रही है उसकी मिट्टी हमें साफ दिखाई दे रही है धूप बहुत अच्छा है जो सीधे उसकी प्रकाश आ रही है शॉप के अंदर --